वहां पर एक करेट दिख रही है नीले रंग की ए--

साइड में जो पिलर है वो क्रीम और चॉकलेटी रंग के हैं ऊपर की तरफ बोर्ड लगा है वाइट रंग का सामने एक रिक्शा खड़ा है पीले और काले रंग का।

यहां पर एक नर्सरी दिख रही है उसमें छोटे छोटे झाड़ लगे हैं।